जमीन दिख रही है। वहां पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। कच्ची रस्ता दिख रही है। बिजली का बड़ा सा खम्बा दिख रहा है।

कुर्सियाँ रखी हुई है। टेबल रखी हुई हैं। घड़ी लगी हुई है। एक लड़का बैठा हुआ है।

एक स्विम्मिंग पूल दिख रहा है जोकि सूखा हुआ है। उसकी सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं और वहाँ पर एक तार भी दिख रहा है।

आ ठेला है। वहां पर सामान भी दिख रहा है। कुछ मकान दिख रहे हैं।

उ बहोत सारे लोग खेल देख रहे हैं उन लोग का जो कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। एक झंडा भी दिख रहा है।

ईंट दिख रही है। उसके बाजू में कुछ मकान दिख रहे हैं। कुछ पेड़ दिख रहा हैं। आसमान दिख रहा है।

साइकिल रखी हुई है। कुछ आदमी हैं। कुछ बच्चे भी है। स्टूल दिख रहा है। मोटरसाइकिल दिख रही है।

एक बोहोत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है। वहां पर बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि सौ पत्ती के हैं।